यहाँ पे लोग घूमने आते है। यहाँ पे एक --

और इसमें बहुत पानी बहते रहता है।

यहाँ पे लोग शाम को घूमने आते हें।

ये मंदिर काफी बड़ा भी है।

काफी साफ़ है और इस तालाब में बहुत सारे --

इस महाविद्यालय में बहुत सारे बच्चे रोज --

पढ़ने आते है यहाँ पे बहोत अच्छे-अच्छे --

यह हमे में दिखता है।

यहाँ पे लोग आ के खाना खाना पसंद करते हैं।

यहाँ पे बहुत तरह की बिरयानी मिलती है।

है यहाँ पे लोग आते है बाल कटाते है दाढ़ी बनाते हैं।

फेसियल भी की जाते है। उसके बाल भी काटे जाते है।